नमस्कार kturtle में question glues पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न question glues क्वेशन glues and not सीखेंगे
इस tutorial को record करने के लिए मैं उबंटु लिनक्स os वर्ज़न 1204 और kturtle वर्ज़न 081 बीटा का उपयोग कर रही हूँ
हम मानते हैं कि आपको kturtle के कार्य का बुनियादी और kturtle में ifelse statement का ज्ञान है
यदि नहीं तो संबंधित tutorials के लिए कृपया हमारी website
आगे बढ़ने से पहले मैं question glue शब्दों के बारे में समझाती हूँ
question glue शब्द हमें छोटे क्वेशन को एक बड़े क्वेशन में glue करने के लिए सक्षम बनाते हैं
and or और not कुछ glue शब्द हैं glue शब्द ifelse conditions के साथ एकसाथ उपयोगी होते हैं
अब नया kturtle application खोलते हैं
dash home पर click करें
search bar में kturtle type करें
और option पर click करें
अब glue शब्द and के साथ tutorial शुरू करते हैं
मेरे पास text editor में program पहले से ही है
मैं text editor से code copy करके kturtle editor में paste करती हूँ
कृपया यहाँ tutorial रोकें और अपने kturtle editor में program type करें
program टाइप करने के बाद tutorial पुनः आरंभ करें
मैं program text को zoom करती हूँ
यह थोड़ा धुंधला हो सकता है
code को देखें
reset command turtle को default position में sets करती है
keyword message के बाद program में message दोहरे उद्धरणचिन्हों में दिया गया है
message command string को input के रूप में लेती है
यह string से text सम्मिलित करते हुए एक popअप dialog box प्रदर्शित करता है और non null strings के लिए एक beep करता है
$a $b और $c variables हैं जो यूजर input संचित करते हैं
ask command variables में संचित होने वाले यूजर input के लिए prompts करती है
if $a + $b> $c और $b + $c> $a और $c + $a> $b if condition को checks करता है
जब दो glued क्वेशन and के साथ true होते हैं तो परिणाम true होता है
if $a != $b और $a != $c और $a != $a if condition को checks करता है
जब if condition true से ऊपर होती है control nested if block में स्थानांतरित होता है
यह checks करता है कि यदि त्रिकोण के भाग असमान हैं
fontsize 18 print command द्वारा उपयोगित font size को sets करता है
go 10100 turtle को canvas के बाएँ से 10 pixels और canvas के ऊपरी ओर से 100 pixels स्थानांतरित होने के लिए नियंत्रित करता है
print command if condition की checking के बाद string दर्शाती है
else command else condition को checks करती है जब if condition block में false हो
print command else condition की checking के बाद string दर्शाती है
else command आखिरी condition को checks करती है
यहाँ else checked होती है जब उपर्युक्त conditions false होती हैं
print command else condition की checking के बाद string दर्शाती है मैं सभी conditions को check करने के लिए code रन करूँगी
program रन करने के लिए run button पर click करें
एक message dialog box popsअप होता है अब ok पर click करें
ab की लंबाई के लिए 5 प्रविष्ट करें और ok पर click करें
bc की लंबाई के लिए 8 प्रविष्ट करें और ok पर click करें
ac की लंबाई के लिए 9 प्रविष्ट करें और ok पर click करें
a scalene triangle canvas पर प्रदर्शित होता है
फिर से रन करें
एक message dialog box popsअप होता है ok पर click करें
ab ab की लंबाई के लिए 5 प्रविष्ट करें और ok पर click करें bc की लंबाई के लिए 6 प्रविष्ट करें और ok पर click करें ac की लंबाई के लिए 6 प्रविष्ट करें और ok पर click करें
not a scalene triangle canvas पर प्रदर्शित होता है
default condition को check करने के लिए फिर से रन करें
एक message dialog box popsअप होता है ok पर click करें
ab ab की लंबाई के लिए 1 प्रविष्ट करें और ok पर click करें
bc की लंबाई के लिए 1 प्रविष्ट करें और ok पर click करें
ac की लंबाई के लिए 2 प्रविष्ट करें और ok पर click करें
does not satisfy triangle s inequality canvas पर प्रदर्शित होता है
अब इस program को हटा दें मैं clear command type करती हूँ और canvas को साफ करने के लिए clear command रन करती हूँ
आगे not condition के साथ कार्य करें
मैं text editor से program copy करती हूँ और इसे kturtle editor में paste करती हूँ
कृपया यहाँ tutorial रोकें और अपने kturtle editor में program type करें
program टाइप करने के बाद tutorial पुनः आरंभ करें
मैं program text को zoom करती हूँ और program समझाती हूँ
reset command turtle को default position में sets करती है
$a $b और $c variables हैं जो यूजर input को संचित करते हैं
if not $a == $b और $b == $c और $c == $a if not condition को checks करता है
not एक विशिष्ट क्वेशन glue शब्द है यह इसके operand के logical state को उल्टा करता है
उदाहरणस्वरूप यदि दी गई condition true है not false बनाता है
और जब condition false होती है output true होगा
print command if not condition की checking के बाद string प्रदर्शित करती है
else command निष्पादित होती है जब if condition false होती है
print command else condition की checking के बाद string प्रदर्शित करती है
go 100100 turtle को canvas के बाएँ से 100 pixels और canvas के ऊपरी ओर से 100 pixels स्थानांतरित करता है
repeat 3 {turnright 120 forward 100} canvas पर एक समभुज त्रिकोण बनाने के लिए turtle को अनुमति देता है
सभी conditions को check करने के लिए मैं program रन करती हूँ
code को रन करने के लिए f5 की दबाएँ
ab की लंबाई के लिए 6 प्रविष्ट करें और ok पर click करें
bc की लंबाई के लिए 5 प्रविष्ट करें और ok पर click करें
ac की लंबाई के लिए 7 प्रविष्ट करें और ok पर click करें
triangle is not equilateral canvas पर प्रदर्शित होता है
फिर से रन करें ab की लंबाई के लिए 5 प्रविष्ट करें और ok पर click करें
bc की लंबाई के लिए 5 प्रविष्ट करें और ok पर click करें
ac की लंबाई के लिए 5 प्रविष्ट करें और ok पर click करें
triangle is equilateral canvas पर प्रदर्शित होता है एक समभुज त्रिकोण canvas पर बन गया है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
संक्षेप में
इस tutorial में हमने क्वेशन glues and not के बारे में सीखा
एक नियतकार्य के रूप में मैं चाहती हूँ कि निर्धारित करने के लिए program लिखें
क्वेशन glue or का उपयोग करके समकोण त्रिभुज के लिए कोण अवधारणा
if or condition की संरचना
if within brackets condition or within brackets condition or within brackets condition
within curly brackets do something
else within curly brackets do something
इस लिंक पर उपलब्ध video देखें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
यदि आपके पास अच्छी bandwidth नहीं है तो आप इसे download करके देख सकते हैं
spoken tutorial project team: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
यह स्क्रिप्ट देवेन्द्र कैरवान द्वारा अनुवादित है आई आई टी बॉम्बे की ओर से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद